इस इमेज में सामने दुकान दिखाई दे रही है और बाहर देखिएगा काफी सारे टेबल और कुर्सी रखे हुए नज़र आ रहे हैं।

इस इमेज में देखियेगा यहां पर सामने एक बस खड़ी हुई दिखाई दे रही है और साइड में एक बड़ा सा खंभा भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर देखिएगा एक रूम दिखाई दे रहा है जहां पर एक आदमी लेटा हुआ है और कुछ टायर्स भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर कई सारी कार लाइन से खड़ी हुई दिखाई दे रही है और बहुत से पेड़ भी यहां पर नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर सामने एक यूनिवर्सिटी दिखाई दे रही है और सीढ़ियों पर कुछ लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर सामने शादी का गेट दिखाई दे रहा है जहां पर दो कपल खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने दुकान दिखाई दे रही है और एक बाहर बच्चा भी खड़ा नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखियेगा यहां पर राधा कृष्ण जी का मंदिर दिखाई दे रहा है और गेट पर साथीये बने नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखियेगा यहां पर सामने कुछ गमले दिखाई दे रहे हैं जिनमें फूलों के पौधे लगे हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखे गए यहां पर सड़क पर एक आदमी चलता दिखाई दे रहा है और सामने पीले रंग की बस भी नजर आ रही हैं।

इस इमेज में देखिए यहां पर एक सड़क दिखाई दे रही है और पास में बड़ी सी इमारत भी यहां पर नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक सड़क भी दिखाई दे रही है और पास में बड़ा सा मैदान भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर सामने कई सारे दुकाने दिखाई दे रही है और सामने एक बैंक भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने एक जंगल का दृश्य दिखाई दे रहा है जहां पर यहां पर देखिएगा कई सारे हिरण नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहाँ पर सामने बड़ा सा शोरूम दिखाई दे रहा हैं और काफी सारे कपड़े टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर सड़क के पास में बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है और नीचे कुछ दुकानें भी नजर आ रही हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर काफी सारी सब्जियां दिखाई दे रही है और कोने में एक व्यक्ति भी नजर आ रहा है।

इस इमेज मे देखियेगा सामने दुकान दिखाई दे रही है और काफी सारी किताबें भी यहां पर नज़र आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक गार्डन दिखाई दे रहा है जहां पर कई सारे गुलाब के फूल नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है और दो लोग यहां पर नहाते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में दिखेगा यहां पर एक टेंट लगा हुआ दिखाई दे रहा है और काफी सारे महिलाएं और बच्चे नजर आ रहे हैं।